पीछे की तरफ का एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है जो कत्थई कलर का है उसमें कुछ हार डले हुए हैं जो पीले रंग के हैं घंटी लगी हुई दिख रही है सामने एक आदमी है जो कि उसके हाथ में फोन दिख रहा है।

तालाब दिख रहा है यहाँ बड़ी नांव है नांव जो ये काले कलर की है और इसके किनारे दो आदमी खड़े हुये दिख रहे है जो एक सफ़ेद शर्ट पहना नीला पेंट पहना है एक सफ़ेद टीशर्ट और काली पेण्ट पहना हुआ है पीछे एक आदमी है नांव की तरफ।

अंदर सीटे दिख रही है जो काली है उस पर सफेद कलर का कवर चढ़ा हुआ है ऊपर यहाँ पर टीने लगी हुई है सिल्वर की और सामने बाहर की तरफ एक आदमी खड़ा है जो की सफेद टी-शर्ट पहना हुआ है और पीछे की तरफ एक दुकान दिख रही है।

और स्टेज पर दो लोग खड़े हुए दिख रहे है जो की काले और ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए है और नीचे की तरफ काफी सारी कुर्सिया रखी है जो की लोहे की है उसपे काफी सारे लोग बैठे हुए दिख रहे है।

यहाँ हरा मैदान दिख रहा है हरे कलर की घास लगी हुई दिख रही है यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे काफी सारी केंडले लगी हुई सबके हाथों मे किसी हाथ मे केंडल दिख रही है।

यहाँ पे हॉल है यहाँ पे काफी लड़के आदमी लोग खड़े हुए है कुछ हेलमेट लगाए है पिले कलर का कुछ के हाँथ मे हेलमेट है कुछ लोग मास्क लगाए हुए है जो कि फिरोज़ी कलर का है।

हमें एक रोड दिख रहा है यहाँ पे काफी सारी साइकिले खड़ी हुई है एक बाइक खड़ी है जो काले रंग की है साइकिल के सामने एक आदमी खड़ा है जो कत्थे कलर की शर्ट पहना है पीछे की तरफ मकान --